और वहाँ कमरे मे ए-एक दो बच्चे भी दिखाई दे रहे है और बच्चे मास्क भी लगाए हुए है।